नमस्कार
gchempaint में formation of bonds के tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम निम्न करना सीखेंगे
मौजूदा bonds में bonds जोड़ना
bonds की स्थिति निर्धारित करना
स्टीरियो केमिकल stereochemical bonds जोड़ना और
inverse wedge हैशेस inverse wedge hashes
यहाँ मैं उपयोग कर रही हूँ ubuntu लिनक्स os version 1204
gchempaint version 01210
इस ट्यूटोरियल के अनुसरण के लिए आपको gchempaint केमिकल स्ट्रक्चर एडिटर के साथ परिचित होना चाहिए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
मैंने इथेन structure के साथ एक नयी gchempaint application खोली है
अब saturated hydrocarbons को unsaturated hydrocarbons में बदलना सीखें
इथेन structure को copy करें और display area पर दो बार paste करें
select one or more objects tool पर click करें
इथेन structure को select करने के लिए इस पर click करें
ctrl + c दबायें structure को copy करने के लिए
और ctrl + v दबाएं structures को paste करने के लिए
देखें कि structures एक दूसरे पर overlap करते हैं
अब दूसरे overlapping structure को एक ओर रखते हैं
cursor को structure के ऊपर रखें और इसे mouse से drag करें
structures में carbon परमाणुओं के बीच single bond को देखें
सबसे पहले single bond को double bond में बदलें
add a bond or change the multiplicity of an existing one tool पर click करें
दूसरे इथेन structure के मौजूदा bond पर click करें
देखें कि single bond double bond में बदल गया है
hydrogen परमाणुओं की संख्या 6 से atoms कर 4 हो गयी है
नया structure ethene ethene है
आगे single bond को triple bond में बदलें
तीसरे ethane structure के मौजूदा सिंगल bond पर दो बार click करें
देखें कि single bond triple bond में बदल गया है
hydrogen परमाणुओं की संख्या 6 से atoms कर 2 हो गयी है
नया structure इथाइन ethyne है
अब structures के names लिखें
add or modify a text tool पर click करें
structures के नीचे click करें
structures के names ethene ethane ethane ethene और इथाइन ethyne enter करें
आगे tetrahedral geometry tetrahedral geometry के बारे में सीखते हैं
structures को एक ओर स्थनांतरित करें
ctrl + a दबाकर सारे objects select करें
select one or more objects tool पर click करें और structures को खींचें
यहाँ tetrahedral tetrahedral methane structure के लिए slide है
सारी bond lengths lengths 109 angstrom हैं
tetrahedral methane structure में सारे bond angles 1095 degree हैं
अब tetrahedral इथेन structure बनाते हैं
add a bond or change the multiplicity of existing one tool पर click करें
display area पर click करें
bond की स्थिति क्षैतिज दिशा में निर्धारित करें
bond के प्रत्येक किनारे पर तीन bonds बनायें
bonds की स्थिति tetrahedral geometry की form में निर्धारित करें
प्रत्येक किनारे पर click करें फिर then bonds की स्थिति भिन्न दिशाओं में निर्धारित करें
इसी तरह दूसरे किनारे पर बनायें
अब सिरों पर hydrogen परमाणु जोड़ें
सिरों पर hydrogen परमाणु जोड़ने के लिए capital h दबाएं
menu खुलता है जिसमे से हम h select करेंगे
देखें कि tool box में hydrogen परमाणु प्रदर्शित होता है
add or modify an atom tool पर click करें
hydrogen परमाणु जोड़ने के लिए सारी स्थितियों पर click करें
add इथेन structure में स्टीरियो केमिकल bonds जोड़ें
टूलबॉक्स में निम्न स्टीरियो केमिकल bonds उपलब्ध हैं
add a wedge bond
add a hash bond
add a squiggle bond
और add a fore bond
इथेन को स्टीरियो केमिकल structure में बदलने के लिए add a wedge bond का उपयोग करें
add a wedge bond पर click करें
फिर सारे bonds पर click करें
बदलाव देखें
add a hash bond पर click करें
और फिर display area पर click करें
अब मैं invert wedge हैशेस invert wedge hashes के बारे में बताउंगी
edit menu पर जाएँ प्रेफ़रेन्सेस पर जाये और इस पर click करें
gchempaint प्रेफ़रेन्सेस window खुलती है
invert wedge हैशेस check box पर click करें
यदि set है तो wedge हैशेस bonds निम्न convention का अनुसरण करेंगे
संकीर्ण सिरा bond के शुरू में और चौड़ा सिरा दूसरे सिरे पर है
यह bond को सही ढंग से देखने में मदद करता है
gchempaint में default convention inverse है क्योंकि यह संदर्श नियमों के अधिक अनुरूप है
hash bond में बदलाव देखें
window को बंद करने के लिए close button पर click करें
इथेन structure में bonds को add a hash bonds से बदलें
add a hash bond पर click करें
सारे bonds पर click करें
अब file सेव करें
toolbar पर save the current file icon पर click करें
save as dialog box खुलता है
file का name formation of bond formation of bond enter करें
सेव button पर click करें
इसको सारांशित करते हैं
इस tutorial में हमने निम्न करना सीखा
मौजूदा bonds में bonds जोड़ना
bonds की स्थिति निर्धारित करना
स्टीरियो केमिकल bonds जोड़ना
और inverse wedge हैशेस
एक नियत कार्य की तरह propane को propyne में बदलें
propane और butane के structures बनायें
स्टीरियो केमिकल bonds प्रदर्शित करें
आपका पूर्ण नियत कार्य इस प्रकार दिखना चाहिए
इस url पर उपलब्ध video देखें